उसको कहीं ले जा रहे हैं एक आदमी कैमरा से फोटो खींच रहे हैं पीछे दो तीन चार टेबुल है।

दुकान पर एक आदमी भी खड़ा है कुछ सामान सब है ये शायद डेरी प्रोडक्ट का है एक।

और तालाब किनारे कुछ घर भी है । पेड़ पौधे वृक्ष भी है । वृक्ष को हम लोग गाछी भी बोलते है।

आनंद आने के लिए झूला लगा हुआ है।

इस झूला में लटका हुआ है एक कुर्सी की तरह दोनों तरफ से घूम रहा है लकड़ी की और यह चारो ओर से घुमाने वाला है।